टेबल जैसा दिखाई पड़ रहा है यहां पर ब्राउन कलर का दिख रहा है ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा जैसा बिछा हुआ है पीछे कुछ वाशिंग मशीन दिखाई पड़ रही है जो कि व्हाइट और सिल्वर रंग में दिखाई पड़ रही है यहां पे एक बोरी जैसा कुछ रखा हुआ है ऊपर से।